यहाँ पे एक औरत और एक पुरुष बैठे हुए है इनके हाथों में कुछ है पीछे और भी बहुत सारे बैनर लगे हुए है खिड़की भी दिखाई दे रही हैं।

पेन पेंसिल इरेजर शोपनर कलर ग्लू को ओ सॉरी फेबिकोल पोस्टर्स पेंसिल कलर --

सामने एक घर दिखाई दे रहा है उसपे एक दुकान खुली उसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ है उसपे लिखा हुआ है चिल्ड्रन बुक्स पटेल नगर राजा बाज़ार--

नीचे सफेद टाइल्स लगी हुई है यहाँ पे टेबल भी दिखाई दे रही है पिछे गेट भी दिखाई दे रहा है और दीवाले भी सफेद दिखाई दे रही है।

यहाँ पे ये एक रूम है जो सफेद रंग से पुता हुआ है ऊपर में भगत सा भगत सिंह की फोटो लगी हुई है इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है गेट भी लगी हुई है खिड़की भी लगी हुई है।

टेबल्स भी है यहाँ पे एक लड़की है और एक बुजुर्ग आदमी है टेबल पर पानी की बोतल रखी हुई है और खिड़की खुली हुई है खिड़की के--